यहा पर एक मंदिर बना हुआ हेगा। ये छोटासा मंदिर हेगा और ये बहुत पुराने जमाने का मंदिर बना हुआ हेगा। पहले काफीस अं --

यहाँ पर एक स्नेक पार्क ल-- बना हुआ है। और यहाँ पर एक एंट्री गेट है। जिसके उपर एक बोर्ड लगा हुआ है। काफी बड़ा सा उसके उपर स्नेक पार्क भी लिखा हुआ है।

ये एक ऑफिस हैगा यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए है जो मीटिंग कर रहे है एक छोटासा कमरा है जिसको ऑफिस बना लिया है और यहाँ पर एक--